यहां पर मुझे एक क्रिकेट मैदान--

दिख रहा है जहां कुछ शैंपू भी टांगे दिख रहे हैं दुकान के बाहर--

बाहर एक बाइक खड़ी हुई दिखाई दे रही है

कलर है यहां रेलिंग्स भी दिखाई दे--

लोहे के गेट में ऊपर कांच भी लगा हुआ दिख रहा है।